यहां पे एक है वो गाड़ियों को बाहर जाने नहीं दे रहे पैसे ले रहे हैं उनसे--

सी_ऍम लिखा हुआ है।

कितने सारे शॉप हैं शॉप के ऊपर पोस्टर लिखा हुआ है जमीन पे बहोत सारे पत्थर गिरे हुए हैं आदमी लेफ्ट पैर से चल रहा है इधर--

बुक का शॉप है वहां पर ऊपर इतना सारा सामान के बाद में एक पोस्टर है एक लड़की का--

आदमी ही ने दो आदमी ने कैप पेहना है। एक आदमी के कैप पे सिर के ऊपर कुछ रखा हुआ है ऑरेंज कलर का। वहां पे इतने सारे व्हाइट कलर के थैले है ऊपर इतना सारा शोरूम है बड़ा --

यहां पे वाइट कलर का एक घर है उसके बाहर रोशनी आ रही है उसका दरवाजा चॉकलेटी कलर का है।

हर डेकोरेशन कर सकते हैं कुछ बुके हैं कुछ हैं कुछ सजावट की गिफ्ट की चीजें हैं।

पेंटिंग का काम चालू है। वहां पे वाइट कलर के दिवाले है। ऊपर से गोल राउंड है। ऊपर कुछ रखा हुआ है। वहां पे इतने सारे मट्टी करते हैं।

कुछ लोगों ने येलो कलर की टोपी पहनी है और ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है वो सब साफ कर रहे हैं वहां पे लोग बहोत सा--

गले में हरे कलर का पट्टा बनाया है वो ऊपर से कट कर रहा है वो उसके बाला गिर रहे हैं वो पे मिरर हैं।

झालर के ऊपर बड़े बड़े लाइट कलर की गई है वहां आइसक्रीम का मिल्क का दूध का चॉकलेटी हर फ्लेवर रखा हुआ है।

नीचे से एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है पानी के बीचों बीच में कुछ रखा हुआ है वहां से लोग आ जा सकते है वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे है पानी में--

यहां पे जनरेटर है जनरेटर है लकड़ी को देख रह है वो एकदम बड़ा लटक रहा है आप पास लकड़ी के इतने सारे झाड़ है।

येलो जो रेड पिंक हो गया है और बस का इंतजार कर रहे ठहरे हुए हैं वहां पे एक बस से लोग आना जाना कर रहे हैं ऊपर है के नीचे लोग ठहरे--

भी दी है सब बनाए हुए हैं नीचे नाव भी बनाई हुई है।

हाइवे है हाइवे के उपर कार जा रही है एक वाइट कलर की कार आ रही है लोग एक साइड पे चल रहे है।

बेट है बेट के उपर वाइट कलर की डाली हुई है।

और चॉकलेटी भी कलर के परदे हैं वहाँ पे पट्टी लिखी हुई है बेड एकदम मस्त है व्हाइट कलर के भी पिलो है।

रेड कलर का डेकोरेशन किया है समाने एक आदमी फोटो काड रहा है उदर हरे कलर का--

बैल है बैल वहां पे कुछ खा रही है और एक रेड एंड व्हाइट कलर की बैल है और एक रेड कलर की है वहां पे मीट का कुछ --

रास्ता है ऊपर गोल गोल गोल बादल आए हुए है। वहां पे इमारत है इमारत के पास नारियल का झाड़ है नारियल के झाड़ के पास छोटे-छोटे झाड़ --

यहां एक बड़ी सी हवेली है हवेली के पास ऊपर एक आदमी पे ठहरा हुआ है उसने आसमानी कलर का शर्ट पहना--